और चेयरस लगे हुए हैं ऊपर फैन चल रहे हैं।

और पेड़ लगे हुए है हरी हरी पत्तियां दिखाई दे री है पेड़ों पर।

चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे है बड़े बड़े घास फूस लगे हुए हैं हरे हरे --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

और आलू प्याज लहसुन और राशन की भी दुकान है।

कैमरा भी लगा हुआ है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं देख रहें हैं।

शोरूम है कार शोरूम जिसमें व्हाइट कलर की नीचे टाइल्स लगी हुई है।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

और इस तरफ भी पोर्ट बनी हुई है।

मशीन बड़ी वाली रखी गई है।

और नीले आसमान दिखाई दे रहे हैं।

दो वर्कर लोग यहां पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स आइटम रखे गए हैं।

और छोटे छोटे अह अह गुलदस्ते बने गए हैं आर्टिफिशियल --

और एक का सौर ऊर्जा का लाइट लगा हुआ छत में।